जैसा की हम इस पिक्चर में देख रहे हैं हमें यह एक बुक शॉप नजर आ रहा है जिलेंदर बुक शॉप ।

जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं हमें कई सारी लड़की और लड़के नजर आ रहे हैं सारी लड़कियां अपने फोन में कुछ देख रही हैं।

कुरकुरे स्नैपचैट बहुत सारी चीज यहां पे हमें दिख रहे है जो कि खाने के समान है।